इस चित्र मे एक रेस्टोरेंट के अंदर का भाग दिखाई दे रहा है और अ रंगीन लाइटिंग लगी हुई है। और कुछ लाइट सफेद कलर की दिखाई दे रहे हे।

नदी के किनारे सीढी दिखाई दे रही हे और नदी के ऊपर अं लाल और हरे कलर के तोरण लगे हुए दिखाई दे रहे हे धन्यवाद।

इस चित्र मे नदी दिखाई दे रही हे आसमान दिखाई दे रहा हे और नदी के किनारे काफी सारे लोग बेठे हुए नजर आ रही हे और कुछ लोग खड़े हे

उ गेट दिखाई दे रहा है और गेट बंद हैं। धन्यवाद।